सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं सीढ़ियों पर रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

मंदिर में बहोत सारे व्यक्ति यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं।

एक जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बैगनी रंग से दीवाल पुती हुई दिखाई दे रही है।

पेड़ दिख रहा है जिनकी पत्तियों का रंग हरा है एक पिलर दिख रहा है।

एक टैक्सी खड़ी हुई है जिसका रंग काला है।